हो सकता है कि ये बरसाती गुफा हो यहाँ पर जब बरसात बहती होगी तो यहाँ पर पानी भी रहता होगा।

और लगता है कि किसी मंदिर के ट्रस्ट की ये जगह है जिन्होंने यह गेस्ट हाउस बनाया है शादी समारोह के लिए।

सड़क पे स्कूटर ऑटो बाइक वगैरह सब भेड़ चाल में लगे हैं।

देखने पे ये कोई पर्यटक जैसे की जगह लग रही है सा लग रहा है

और यह किसी पार्क